और वो चेयर दिखाई दे रही है वाटर का पानी दिख रहा है।

आह मीन्स थोड़ा क्या आधा ब्लैक एंड व्हाइट है और आधा कलरफुल है।

एक आदमी जा रहा है और एक एक लड़का खड़ा हुआ है थोड़ी से हरी घास दिखाई दे रही है छोटे-छोटे पत -

जो अगल-बगल में रोड दिख रहे हैं दोनों के गेट काफी खूबसूरती से बनाए गया है। लाइटिंग भी है।

का स्थापना किया गया है बगल में लाइटस वगैरह जल रही हैं और यहाँ पे ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जैसे जिसमें बहुत पब्लिक दिखाई दे रही है।

यहाँ पर देखिये आ दो फ्लोर का घर है छोटा सा और इस घर में एक छोटी सी दुकान भी है।

और यहाँ पे पत्थर हैं सब। पत्थर दिखाई दे रहे हैं। कुछ पिंक कलर में दिख रहे हैं।

और इनकी आँखें बंद है हाथों पे हाथ रखे हुए है बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

और कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बैग्स वागेरा भी दिख रहे हैं ऊपर अंडरग्राउंड लाइटस भी दिख रही है।

यहाँ पे पेड़ भी काफी बड़े-बड़े दिख रहे हैं। एक व्हाइट कलर की गाड़ी दिख रही है। धूप है छाँव है।

गाजर है जो डिजाइन किया गया है और यहां पर चिकन रखा गया है चिकन के साथ एक छोटी-सी कटोरी में चटनी रक्खी गयी है।

और यहां पर कोई भी नहीं है बहुत ही खाली जगह है प्लेटफार्म और रात का सीजन है यहाँ पे --

और यहाँ पे दो बस दिखाई दे रही है जो ग्रीन और ब्लैक कलर में है और कुछ रैट कलर की इसमें लाइनिंग भी है।